व्हाइट कलर की टी शर्ट हैं ब्लैक कलर की लोअर पहनकर एक अंकल खड़े हुए हैं।

अगरबत्ती लेकर सामने की तरफ आरती कर रहे हैं और पानी के अंदर आधे घुसे हुए हैं।

ऑटो का कलर ग्रीन कलर का है और जो ऑटो का बगल में एक बैटरी रिक्शा खड़ा हुआ है इस पर एक वाइट कलर की शर्ट पहन के एक इंसान --

जहाँ पर पत्थरों के ऊपर काफी सारी डिजाइन बनी हुई है।

स्कूल रोल गोलप्ले फंक्शन है।

ये उन मछलियों में से कुछ मछलियों को खरीद रहे हैं एक औरत इन्हें काट कर के मछलियाँ--

ब्लैक कलर की लाइट की तार पड़ी हुई है।

लोहे की जालियां लगी हुई है चारों तरफ पहली बात लोहे के टीन टप्पर लगे हुए है।

चारों तरफ लोहे के चद्दर लगे हुए हैं जो चौहे के चद्दर हैं उनसे एक छोटा सा मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है।

इसपे पूरा व्हाइट कलर का पेंट होता हुआ है।

छोटे से मेले की फोटो है जैसे यहाँ पर एक स्टैंड की तरह जैसे बस स्टैंड के बगल में।

यहां पर एक बहोत बड़ा झूला सा लगा हुआ है।

जो है ये एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर एक कंटेनर बहुत बड़ा खड़ा है यह एक टैंकर है जिसमें पेट्रोल भरा होता है।

ब्लैक कलर का है नीले कलर का है और कुछ फूल ऊपर से ब्लैक कलर के लग रहे हैं।

जैसे की यहां पर एक इंसान दुकान पर बैठा है।

यह एक मंदिर की फोटो है जो यह मंदिर है बहोत पुराना मंदिर है यहा पर--

कुर्सी पर बगल में कुर्सी के हेल्मेट रखा हुआ है।

बड़ा बाथ टब जैसा है जो बाथ टब दिख रहा है यहाँ पर।

बहुत बड़ी-बड़ी लाइट के बोर्ड दिख रहे हैं आई थिंक ये अचानक से मतलब डिवाइड किए गए हैं ये डिवाइड किए गए हैं।

और ऊपर और नीचे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइट की तारे निकली हुई है।

उस जगह के ऊपर स्टैचू है जगह के चारों तरफ एक निशान लगे हुए हैं लाइक जैसे चारों तरफ दीवार बनी हुई है।